यह चूरू जिले का एक साइकिल मार्ग है इसमें --

इस चित्र के अनुसार यह एक डांस कलब है और बहार जगमगाते हुए लाइट रंग बीरंगी जग रहे हैं और यहां लोग डास कर रहे है।

आवाजाही कर रहे है और एक बाइक पर तीन से चार लोग सवार है।

यह एक फ्रूट की शॉप है जहाँ पर तरह-तरह के फ्रूट --

द्वारा किया जा रहा है यहां --

इस चित्र के अनुसार नीचे शॉप है।

जहां पर कुछ व्हीकल खड़े हैं और बाहर पानी कि सुविधा है।

इस चित्र के अनुसार एक घर है और यह अच्छी बिल्डिंग है जहाँ पर के द्वारा --

इस चित्र के दृश्य के अनुसार यह एक अंदर भवन है।